लगे हुए हैं ऊपर से बादल छा रहे--

है यहां पर मछलियों को--

ये कार शादी के--

इसमें काफी ऑरेंज एप्पल अनार मैंगो --

लड़के ने हाथों में भी शूज पेहने--

है अलमीरा पर--

ये लोग इकट्ठे योगा--